दोनों पुतलों मे लड़कों के कपड़े पहनाए गए है अंदर एक आदमी खड़ा है दुकान का गेट और शीशे का बहुत बड़ा है यहाँ एक छाता दिख रहा है छाते के पास बहुत सारे आदमी खड़े है।

यह एक बहुत बड़ा दुकान है दुकान में ऊपर में बस शीशे ही शीशे लगे हुए हैं यहाँ एक बाइक की दुकान है।

बाहर बहुत सारे टेबल रखे हुए हैं टेबल भूरे रंग के है।

मंदिर के बाहर एक आदमी खड़ा है मंदिर के गेट पर एक पोस्टर लगे हुए हैं।